सफेद और ग्रीन दिख रही है सामने की और मुझे कुछ घर भी दिखाई दे रहे है आसमान भी साफ़सुधारा और सुंदर भी दिखाई दे रहा है यहा पर एक रोड भी दिखाई दे रहा है लगभग आठ फीट का--

सामने एक ओर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कुछ इन्सट्रक्शन लिखे हुए दिखाई दे रहे है यहा पर मुझे एक पेड़ दिखाई दे रह है जो की बडा विशाल पेड़ दिखाई दे रहा है और अच्छा भी दिखा--

यह तस्वीर में मुझे एक कंप्यूटर क्लासेस दिखाई दे रही है कंप्यूटर नहीं रखे हुए है बट ये इन फिउचर कंप्यूटर रखे जा सकते यहाँ पे मुझे एक डेक्स नजर आ रही है जो की ब्राउन कलर की कुछ चेयर दिख--

तस्वीर में मुझे एक शादी का मंडप दिखाई दे रहा है शादी के मंडप के अंदर बहुत सारे कॉलम खड़े है जो बहुत टेक्चुरल दिखाई दे रहे है यहाँ--

मुझे बहुत सारे फूल भी दिखाई दे रहे है यहा पे फूलों के अलग अलग कलर दिखाई दे रहे है जैसे की मुझे ऑरेंज व्हाइट ब्लु और व येल्लो दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ कुछ कर्टन दिखाई दे रहे है जो की रेड कलर के है।

तस्वीर में मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है रोड मुझे ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है रोड मुझे लगभग मुझे पंधरा फीट लंबा दिखाई चौडा दिखाई दे रहा है सामने की और मुझे कुछ बाइक खड़ी दिखाई दे रही है।